एक टेंपो दिखाई दे रहा है और एक कुत्ता बैठा हुआ है।

यह एक पिज्जा की दुकान है।

एक महिला बैठी हुई और लाइटे भी लगी हुई है एक पंखा दिखाई दे रहा है।

जिसमें में बाहर गमलों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाहर कन्नी में ऑयल रखा हुआ है।

एक व्यक्ति अंदर भी दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति बाइक पे बैठा हुआ है सामने एक फिल्टर भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत ही अच्छा चित्र है जिसमें कई सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और एक बड़ी सी सीढ़ी दिखाई दे रही है सोफे धरे हैं मेज रखी है।

और दीवार पे दस पोस्टर लगे हुए हैं और एक पर्दा दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्स बिछी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है।

बाहर गेट पे कुछ बाईकें भी खड़ी हुई है एक जीना दिखाई दे रहा है जिसपे दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है।

एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

पर एक बड़ा सा क्यू_आर कोड लगा हुआ है और कई सारी गाड़ी भी खड़ी हुई है सामने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक झरना है जो बहोत ही तेज चल रहा है।

जिसमें कई सारी भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है और कई सारी फूलों की माला भी रखी हुई है।

कुछ साइकिलें खड़ी हुई हैं एक व्यक्ति रेड़ा लेके आ रहा है जिसमें सामान रखा हुआ है।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

और कहीं सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं नीचे मैदान में छोटी छोटी घांस बिछ रही है।

जिसमें कई सारे व्यक्ति जिम कर रहे हैं।

गमले भी दिखाई दे रहे हैं एक महिला दिखाई दे रही है एक नलका दिखाई दे रहा--

तीन दीक बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक बलब दिखाई दे रहा है।

तीन महिलाएं दिखाई दे रही है अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

जो खा रहे हैं एक पानी का गिलास रखा हुआ है एक नमक की डिब्बी रखी हुई है।

यह एक खेत है जिसमें कई सारे पेड़ रखे हुए हैं।

नीचे तीन कुर्सी रखी हुई है और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

चार कुर्सी दिखाई दे रही है गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं दो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं और एक खंभे पे टाटा लिखा हुआ है।